और प्लेटो में स्पूंस भी है।

और कुछ फूलो की भी पेड़ यहां पर दिख रहे हैं बहोत घना ऐसे ही यहां पे जंगल दि--

और उसी रोड पे एक लड़का चल रहा है।

यहां पे इलेक्ट्रिक के लिए सामान--